इसमे देखिए आपको एक दिख रहा होगा की बहोत बड़ा बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे आप देख ही सकते हो की कितना आपको अ उसमे देखने को मिल रहा है और --

फैला हुआ है आप ये भी देख सकते है की एक पीछे आपको दिख रहा होगा काफी सुन्दर और बेहतरीन आपको इसमें दिख रहा है ये चीज काफी --

इसमें देख सकते है जैसे नदी दिखाई दे रहे है और नदी के किनारे आप पीछे देख सकते है। लाइटिंग भी काफी अच्छी हैं।

आप देख सकते है कि कई गाड़िया इसमे खड़ी हुई है और जो है गाड़िया है वो काफी कलर हो गई इसमें ब्रांड मे है और व्हाइट ब्लू रेड इसमे ब्लैक ऐसी काफी --

काला रंग का है और इसमें सफ़ेद रंग की गई है और इसमें आप देख सकते हैं की काफी सुन्दर देखने को मिला है।

फैन के अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि लाइटिंग है और ये सब चीजे हैं और लाइटिंग के अलावा आप देख सकते हैं कि और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आपको लाइटिंग और हर --